एक बस स्टैंड है जिसमे एक बड़ी बस खड़ी हुई दी खड़ी हुई है। पूरे काले --

यह एक बोल म-म-म भकालो है जहा पे एक मोटरसाइकिल है काले कलर कि दो पुतले कड़े हुए है।

टॉकीज है टॉकीज --

ऑटो है ऑटो का कलर हरा कलर है।

पीला कलर है उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है सफ़ेद शर्ट है काला पैंट है एक औरत है जिसने--

और एक सीरीज जल रही है ऑरेंज कलर की एक बल्ब है सफ़ेद कलर का जीने है सफ़ेद कलर के और पिंक कलर है।